ये एक फूलों का दुकान का फोटो है जहाँ पे बहुत सारे फूल और मालायें बिक रहे हैं।

दूर में एक लाइट भी दिख रहा है और ये पार्क में बोहोत सारे बैठने का जगह है।

यह जो पिक्चर है यह आलू का पिक्चर है अ जिसके रंग बदामी है।

इस पिक्चर में बहुत सारें फुल दिख रहा है और फूलों की माला भी दिख रहा है।